--गुलाबी काली मिट्टी दिख रही है सफेद कलर के ईंटें दिख रहे हैं।

गाड़ी खड़ी हुई हैं और लाल कलर की पट्टियां दिखाई दे रही हैं।

दो पिलर दिखाई दे रहा है पिलर के बीचों बीच एक मशीन दिखाई दे रही है मशीन में।

काली मिट्टी दिख रही हैं वहाँ एक बस खड़ी हैं जमीन पर और बादल हैं सफ़ेद नीले कलर के बादल दिख रहे हैं।

पत्थर वाली रोड दिख रही है वहाँ पर एक दो पहिया वाली गाड़ी खड़ी है दो खिड़की दिख रही है लाल कलर के पिलर है दिवालों में पीला कलर पुता हुआ है।

--और लाल कलर की ईंट की जमीन है और ग्रे कलर की ईट है।